इस पिक्चर को देख कर हम यह कह सकते है की यह एक गेरेज की तस्वीर है यहा पर काफी सारी बाईके रिपेर होने के लिए आई हुयी है।

इस पिक्चर को देख कर हम यह कह सकते है की ये एक बेंक की तसवीर है बेंक में काफी सारे पंखे भी लटके हुए नजर आ रहे है एक पंखा चल रहा है और सभी पंखे बंद है यहा पे कई सारे खिड़की और दरवाजे भी है।